सडक के किनारे राजकीय बेधिक महाविद्यालय औरंगाबाद लिखा हुआ है और यह नीले अक्षरो से लिखा हुआ है।

बड़ासा हॉल है जिसमे बहुत सारे खंबे लगे हुए है लगभग तीस चाली खंबे है और --

सड़क के किनारे औरंगाबाद महानगरपालिका औरंगबाद लिखा हुआ है वार्ड क्रम एक सो चोदा --

हॉल में बहुत सारे खंबे लगे हुए है और दिवार पर खंबो पर चित्र बनाए हुए है और बहुत सुंदर पेंटिंगस रखी हुई है ए --

नाम लिखा हुआ है चारो तरफ दुकाने है बच्चे है और लाल और सफ़ेद --

चारो तरफ हरे झंडे बनाये हुए है और उन पे गोल्डन रंग की पट्टीयां लगाई हुई है हरे और लाल रंग की झंडे है।